और लाइट लगी हुई हैं सामने एक टाइमिंग घड़ी लगी हुई है।

उनके सामने एक कांच की विंडो है ऊपर पंख लगे हुए हैं।

कुछ महिलाएं बैठी हैं और कुछ महिलाएं खड़ी हैं साइड में एक व्यक्ति खड़ा है।

यह एक शॉप है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

यह एक दुकान है जिसमे कुछ प्लास्टिक के फूल रखे हुए हैं गमले रखे हुए हैं।

यह एक नदी है जिसमें नेउ जा रही है।

यह एक एल_सी_डी की शॉप है जो--

कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष खड़े हुए हैं।

सामने एक पेड़ है एक दुकान बंद है जिसका शटर --

साइड में एक कांच की विंडो है और--

सामने ही मेज पर एक फाइल रखी हुई है। चाभी रखी हुई है।

विंडो है ऊपर बहुत सारे कोट टंगे हुए है।

और साइड में एक हैंगर टंगा हुआ है जिस पर कृष्ण कन्हैया के कपड़े लटके हुए हैं।

पीछे भी कुछ डब्बे रखे हुए हैं। पीछे दीवार है। दीवार पर पेंट हुआ --

यह एक पंखे की दुकान--

रंग बिरंगे और लाइटें लगी हुई है।

ऊपर एक टीन पड़ी हुई है नीचे टाइल लगी हुई है।

इसमें बहुत सारी मशीनें हैं।

इसके ऊपर एक भीगोना रखा हुआ है।

डॉक्टर आर्थो प्लस का गद्दा रखा हुआ है।

और कुछ बैलून लगे हुए हैं जो रंगबिरंग--

और लाइटें लगी हुई हैं ऊपर परदे लगे हुए हैं।

एक स्कूटी खड़ी हुई है और सामने एक व्यक्ति है।

सामने समोसे रखे हैं ऊपर मिठाई के डब्बे रखे हुए हैं और लाइट लगी हुई है।

बैठे हुए है और सामने एक जिन्ना जा रहा है जिस पर कांच की ग्रिल लगी हुई है।

फूलों की मालाएं लटकी हुई है रंग बिरंग के--

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं।

एक मेज पड़ी हुई हैं। कुर्सियां पड़ी हैं।

जिसमें एक पहाड़ है और एक झरना बह रहा है जिसके नीचे कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे हैं।

यहां कुछ रूम हैं जिस पर दरवाजे लगे हुए हैं।

यह एक लीला फैशन शॉप है।

इसके सामने कुछ लेडिस पुतले लगे हुए ह--

और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं।

यह एक प्ले स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं औ--

रुम के सामने ड्राइंग के पेज रखे हुए हैं जिस पर कुछ चित्र बना रखे हैं बच्चों ने।